नमस्कार जीचेम्पेंट में फॉर्मेशन ओएफ बॉन्ड्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे मौजूदा बॉन्ड्स में बॉन्ड्स जोड़ना बॉन्ड्स की स्थिति निर्धारित करना स्टीरियो केमिकल बॉन्ड्स जोड़ना और इनवर्स वैज हैशेस यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु लिनक्स ओएस वर्जन 1204 जीचेम्पेंट वर्जन 01210 इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जीचेम्पेंट केमिकल स्ट्रक्चर एडिटर के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
मैंने इथेन स्ट्रक्चर के साथ एक नयी जीचेम्पेंट एप्लीकेशन खोली है
अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बदलना सीखें
इथेन स्ट्रक्चर को कॉपी करें और डिस्प्ले एरिया पर दो बार पेस्ट करें
सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें
इथेन स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करें
CTRL C दबायें स्ट्रक्चर को कॉपी करने के लिए और CTRL व दबाएं स्ट्रक्चर्स को पेस्ट करने के लिए
देखें कि स्ट्रक्चर्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं
अब दूसरे ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को एक ओर रखते हैं
कर्सर को स्ट्रक्चर के ऊपर रखें और इसे माउस से ड्रैग करें
स्ट्रक्चर्स में कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड को देखें
सबसे पहले सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदलें
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ एएन एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
दूसरे इथेन स्ट्रक्चर के मौजूदा बॉन्ड पर क्लिक करें
देखें कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया है
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 से घट कर 4 हो गयी है
नया स्ट्रक्चर ईथीन है
आगे सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में बदलें
तीसरे एथेन स्ट्रक्चर के मौजूदा सिंगल बॉन्ड पर दो बार क्लिक करें
देखें कि सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल गया है
हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 6 से घट कर 2 हो गयी है
नया स्ट्रक्चर इथाइन है
अब स्ट्रक्चर्स के नाम लिखें
एड ओर मॉडिफाई आ टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर्स के नीचे क्लिक करें
स्ट्रक्चर्स के नाम इथेन ईथीन और इथाइन एंटर करें
आगे टेट्राहेड्रल ज्यामिति के बारे में सीखते हैं
स्ट्रक्चर्स को एक ओर स्थनांतरित करें
CTRLA दबाकर सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करें
सिलेक्ट ओने ओर मोरे ऑब्जेक्ट्स टूल पर क्लिक करें और स्ट्रक्चर्स को खींचें
यहाँ टेट्राहेड्रल मीथेन स्ट्रक्चर के लिए स्लाइड है
सारी बॉन्ड लेंग्थस 109 ऐंग्स्ट्रॉम हैं
टेट्राहेड्रल मीथेन स्ट्रक्चर में सारे बॉन्ड एंगल्स 1095 डिग्रीज हैं
अब टेट्राहेड्रल इथेन स्ट्रक्चर बनाते हैं
एड आ बोंड ओर चंगे थे मल्टीप्लिसिटी ओएफ एक्सिस्टिंग ओने टूल पर क्लिक करें
डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
बॉन्ड की स्थिति क्षैतिज दिशा में निर्धारित करें
बॉन्ड के प्रत्येक किनारे पर तीन बॉन्ड्स बनायें
बॉन्ड्स की स्थिति टेट्राहेड्रल ज्यामिति की फॉर्म में निर्धारित करें
प्रत्येक किनारे पर क्लिक करें
फिर तीन बॉन्ड्स की स्थिति भिन्न दिशाओं में निर्धारित करें
इसी तरह दूसरे किनारे पर बनायें
अब सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ें
सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने के लिए कैपिटल ह दबाएं
सबमेन्यू खुलता है जिसमे से हम ह सेलेक्ट करेंगे
देखें कि टूल बॉक्स में हाइड्रोजन परमाणु प्रदर्शित होता है
एड ओर मॉडिफाई एएन अतोम टूल पर क्लिक करें
हाइड्रोजन परमाणु जोड़ने के लिए सारी स्थितियों पर क्लिक करें
अब इथेन स्ट्रक्चर में स्टीरियो केमिकल बॉन्ड्स जोड़ें
टूलबॉक्स में निम्न स्टीरियो केमिकल बॉन्ड्स उपलब्ध हैं एड आ वेज बोंड एड आ हाश बोंड एड आ स्क्विगल बोंड और एड आ फोर बोंड
इथेन को स्टीरियो केमिकल स्ट्रक्चर में बदलने के लिए एड आ वेज बोंड का उपयोग करें
एड आ वेज बोंड पर क्लिक करें
फिर सारे बॉन्ड्स पर क्लिक करें
बदलाव देखें
एड आ हाश बोंड पर क्लिक करें और फिर डिस्प्ले एरिया पर क्लिक करें
अब मैं इन्वर्ट वैज हैशेस के बारे में बताउंगी
एडिट मेन्यू पर जाएँ प्रेफ़रेन्सेस पर जाये और इस पर क्लिक करें
जीचेम्पेंट प्रेफ़रेन्सेस विंडो खुलती है
इन्वर्ट वैज हैशेस चेक बॉक्स पर क्लिक करें
यदि सेट है तो वैज हैशेस बॉन्ड्स निम्न कन्वेंशन का अनुसरण करेंगे
संकीर्ण सिरा बॉन्ड के शुरू में और चौड़ा सिरा दूसरे सिरे पर है
यह बॉन्ड को सही ढंग से देखने में मदद करता है
जीचेम्पेंट में डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन इनवर्स है क्योंकि यह संदर्श नियमों के अधिक अनुरूप है
हैश बॉन्ड में बदलाव देखें
विंडो को बंद करने के लिए क्लोज़ बटन पर क्लिक करें
इथेन स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स को ऐड अ हैश बॉन्ड से बदलें
ऐड अ हैश बॉन्ड पर क्लिक करें
सारे बॉन्ड्स पर क्लिक करें
अब फाइल सेव करें
टूलबार पर सेव थे करेंट फाइल आईकन पर क्लिक करें
सेव एएस डायलॉग वॉक्स खुलता है
फाइल का नाम फार्मेशन ऑफ़ बॉन्ड एंटर करें
सेव बटन पर क्लिक करें
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा मौजूदा बॉन्ड्स में बॉन्ड्स जोड़ना बॉन्ड्स की स्थिति निर्धारित करना स्टीरियो केमिकल बॉन्ड्स जोड़ना और इनवर्स वैज हैशेस एक नियत कार्य की तरह प्रोपेन को प्रोपाइन में बदलें प्रोपेन और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स बनायें
स्टीरियो केमिकल बॉन्ड्स प्रदर्शित करें
आपका पूर्ण नियत कार्य इस प्रकार दिखना चाहिए
इस उर्ल पर उपलब्ध विडिओ देखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद